व्हाइट स्टोन से कवरिंग की गई है राइट साइड ।

इस तस्वीर में आप देख सकते है ये इलेक्ट्रिकल इ इ रिक्शा है।

और इसमें शटर गेट अलग-अलग सेपरेट दिए गए हैं।

शहर का बोर्ड लगा हुआ हैं।

ये एक मैकेनिकल है जिस इस तस्वीर में आप देख सकते है यहां।

वह वर्क करना बता रहा है वो ड्रिल मशीन पे।